ये एक बहुत बड़ी गुफा जैसी दिखाई दे रही हैं गुफा में हरी-हरी एलगी लगी हुई हैं।

एक खुला मैदान जैसा दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ अ दो-तीन इमारते जैसी दिखाई दे रही है।

फाउंटेन जैसे दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं और बहुत रंग बिरंगे हैं।